उसके सिर पर मोर का पंख लगाया हुआ है।

यह एक छत का दृश्य है और छत में ढलाई हो रहा है।

एक व्यक्ति अपने सिर पर पगड़ी बांधा हुआ है।

इस मूर्ति के पीछे में वाइट कलर का पेंट किया गया है।

मूर्ति के पीछे में मोर कलर का पंख भी लगाया हुआ है।

इस ग्राउंड में ढेर सारे लड़कियां और कुछ लड़के भी हैं जो कि गोल बनाकर बैठे हुए हैं।

इसमें दोनों हाथों से अंगूठों को छुए हुए है।

कुछ आलू पर मट्टी लगा हुआ है कुछ आलू एकदम से अच्छे हैं।

कुछ पौधे पीले कलर के हैं और कुछ पौधे हरे कलर के हैं।

सलून में शीशे लगे हुए हैं।

के ऊपर में ढेर सारा अलमारी लगाया हुआ है जो कि कुछ अलमारी लकड़ी के--

दुकान के बगल में ही एक ग्रिल है जो की ब्लू कलर का है।

यह एक लैब के कमरे का दृश्य है इस कमरे की दीवार की कलर व्हाइट है।

लैब में बहुत ढेर सारा टेबल और चेयर लगाया हुआ है।

इस लैब में एक अलमारी भी है।

हॉल में ढेर सारा कबोर्ड बनाया हुआ है।

यहां पर ढेर सारे चेयर लगाया हुआ है।

दीवालो पर ढेर सारा पोस्टर चिपकाया हुआ है।

ढेर सारा बैलून भी लगा हुआ है जो की ऑरेंज और ब्लू कलर का है।

टेबल के ऊपर में शीशा लगाया हुआ है।

फर्स पर टाइल्स लगा हुआ है जो कि ब्राउन कलर का है।

और बाउंड्री का कलर पीला है।

दूसरे तरफ में ढेर सारा खेत खलिहान भी है।

इस हाल में ढेर सारी खिड़कियां भी हैं।

और बाउंड्री के चारों तरफ में जाल लगाया हुआ है और बीच बीच में बांस गाड़ा हुआ है।